ये भी एक गार्डन ही लग रहा है और यह बहुत ही बड़ा गार्डन है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी हैं लगे हुए और यहाँ हर पेड़ के जो हैं ना अधे चुने किए हुए हैं और यहाँ पे एक बाइक भी लगाई हुई और एक आदमी शायद खड़े हैं।

जो है शायद यह भी चर्च वगैरह ये म-मस्जिद टाइप की ही लग रही है ये बहुत ही बड़ी मस्जिद लग रही है ये वाइट कलर की है और इधर वो जो ना एक सड़क बनी हुई है और उधर बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रही है और एक बिजली का खंभा भी है जो की सीमेंट की बनी है |

और ऊपर बहुत सारे तार वगैरह भी लगी हुई है और यह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लग रही है दिखने में औ